एक दीवाल बन रही है उसके पास कुछ लोग खड़े हुए हैं नीचे टीन पड़ी हुई है पाइप पड़े हुए हैं।

कुर्सियां रखी हुई है। कुछ लोग खड़े हुए हैं। आस-पास बिल्डिंगे है। एक वेयरहाउस है।

यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जेंटस खड़े हुए हैं एक औरत खड़ी हुई है।

एक नदी है। नदी में एक बोट है। बोट पे दो लोग बैठे हुए हैं। एक लड़का खड़ा हुआ है। एक बोट चला रहा है।

यहाँ पे घर बना हुआ है। घर के में दरवाजे बने हुए है। खिड़की लगी हुए हैं। खिड़कियों में कांच लगे हुए है। जाले लगे हुए दरवाजे में।